इसमें दरवाजे दिख रहे हैं जो शीशे के हैं पीछे की तरफ एक काउंटर रखा हुआ है और साइड में कुछ डिब्बे भी जमे हुए हैं।

सामने बेड पर पड़े हुए दो गद्दे दिख रहे हैं जिस पर पन्नी लगी हुई है।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी शॉप दिख रही है जिसमें सामने एक काउंटर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक रोड दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक मकान भी दिखाई दे रहा है जिस पर बहोत सारे पोस्टर चिपके हुए हैं।

पीछे की तरफ कुछ कमरे भी दिख रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

सामने की तरफ कुछ बर्तन भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिन में एक बड़ी सी कटोरी भी रखी हुई है।

सामने कुछ मेज और कुछ बड़ी बड़ी कुर्सियां दिखाई दे रही है।